और इस घर की आगे की तरफ में भी एक बड़ा व्हाइट घर दिखाई दे रहा है।

और घुसने का गेट मे भी गेट नंबर दिखाई दे रहा है।

में अटेंशन लिख के दिख रहा है।

और फ्री साइड में वॉल में वाइट कलर की मारके दिखाई दे पा रहा है।

और फिर यहां मे बहुत सारा पत्थर भी देख पा रहा है।

टी_वी का साथ साथ भी यहाँ में ए_सी दिखाई दे पा रहा है।

यहां में अप जेंसो लिख के दिख पा रहा है।

उसकी साइड में भी एक बिल्डिंग उठा के है।

एक लड़का का माथा बस दिखाई दे रहा है।

इनकी आगे में भी एक लाइट --

मुझे ये तस्वीर में बहोत सारा बच्चे लोग क्लास में देख पा रहा है।

आगे की तरफ माउंटेन सब दिख पा रहा है।

सोफा की राइट साइड में भी एक छोटा कर के एक टेबल है।

मुझे इस पिक्चर में बहुत सारे दिख पा रहा है।

इस साइड में भी एक लड़का बैठा हुआ है।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

फिगर के अंदर में भी एक लड़का बैठा हुआ है।

फिर ऊपर में भी रोबी रेस्टोरेंट लिख के देख पा रहा है।

फिर यहां में एक एक्टेंशन भी देख पा रहा हैं।

लड़का के पीछे में भी एक लंबा एक घर दिख रहा है।

फिर ऊपर में गवर्मेंट कॉलेज दोईमुख लिख के देख पा रहा है।

ऊपर में भी एक फैन दिख रहा है।

से दरवाजा भी देख पा रहा है।

मुझे इस फोटो में लेबर लोग काम करके देख पा रहा है।

इस फोटो में पांच आदमी लोग हैं।

बेम्बु सब भी देख पा रहा है।

ये चेयर के पीछे मे भी एक सफेद कलर के घर दिख पा रहा है।

मुझे एक पिक्चर में बहुत सारा लोग दिखाई दे रहा है।

फिर से यह हमें एक बड़ा करके कार्टून भी दिख रहा है।

इस साइड मे एक लड़का भी देख पा रहा है माथा दिखा के।